एक बडा सा मैदान बना हुआ है जो मैदान के सामने एक मकान है जिस मकान में सफेद कलर का पैंट पूता हुआ है और अगल- बगल हरे -भरे पोधे भी है बादल सफेद नीले है।

ये गार्डन बना हुआ है जिस गार्डन मे हरी घास जमी हुई एक-एक जो एक झण्डा-एक झण्डा लगा हुआ है।

और नीचे कुछ जो गाड़ी रखने का कार रखने जगह बना हुआ है जिसमे कार अंदर कार रखी हुई है और बड़ा सा मैदान है गार्डन है जिसमें कुछ लोग झूला झूल रहे हैं बैठे हुए हैं।

और उसके बाहर कुछ साईकले स्कूटीयां गाड़ियां खड़ी हुई है। कुछ लोग अ खड़े हुए हैं। आ जा रहे हैं। उसके बगल में एक हरा पौधा है। बादल सफेद हैं।

रायगढ़ स्टेशन जिस रायगढ़ के स्टेशन में एक ट्रेन खड़ी है जिस ट्रेन जिस जिसमें एक आदमी जो पानी का बोतल आ हाथ में रखा है बाल्टी --

-- क् बड़ा सा गार्डन बना हुआ है जिसका गार्डन में एक यहाँ और कुछ परिषद् है जिसमे यहाँ नगर प--